हमें यहाँ पर एक मूर्ति दिखाई दे रही है जो की बिल्कुल राधे कृष्ण भगवान की तरह लग रही है एक तरफ श्री कृष्ण जी है और दूसरी तरफ राधा जी है वो अपने मुकुट सर पर मुकुट भी लगाए हुए हैं।

हमे यहाँ पर एक मैदान दिखाई दे रहा है जो क्रिकेट खेलने वाला मैदान है उसकी पिच भी दिखाई दे रही है उसकी पिच बैइस ग़ज़ की होती है जिस --